इधर झाड़ भी लगा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट का चित्र है।

ये एक सुंदर सा ग्रा गार्डन का चित्र है।

बगल में एक बैंक भी है।

यहां पर साइड साइड में काफी सारे झाड़ है पौधे भी है।

स्टेशन में काफी सारे लोग दिख रहे हैं आदमी औरत सब है।

खम्बा भी लगा हुआ है और काफी बड़े बड़े पेड़ भी है।

यहां पर काफी बड़े बड़े पेड़ भी हैं।